यह एक रूम है रूम में बहुत सारे लाइट लगाए हुए हैं।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

बहुत बड़ा गेट दिखाई दे रहा है जो लोहे का है।

दो पिलर भी दिखाई दे रहा है और पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।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

यहां पे पोल खम्भा भी दिखाई दे रहा है उसमें तार खींचे हुए हैं।

पीछे अंधेरा दिखाई दे रहा है।

यह एक रूम है और रूम में बहुत सारे बेंच लगाए हुए हैं।

बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे गाड़ियां भी खड़ी हैं और बाहर भी खड़ी है।

पेड़ भी दिखाई दे रहा है पीछे एक टावर भी दिखाई दे रहा है।

यह एक रूम है और रूम में बहुत सारे साड़ियां और पर्दा लटकाया हुआ है।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

बहुत सारे पोस्टर भी लगाए हुए है।

दृश्य में बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे--

दृश्य में एक घर दिखाई दे रहा है।

दो एल_सी_डी भी लगाए हुए हैं।

पीछे दीवार को काला कलर से पेंट किया गया है।

घर का गेट भी दिखाई दे रहा है और खिड़की भी दिखाई दे रहा है।

दृश्य में एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है और बिल्डिंग के बाहर एक बहुत बड़ा मशीन रखा हुआ है।

बगल में एक लोहे का खंभा गढ़ा हुआ है और पीछे बहुत सारे घर दिखाई दे रहे हैं।